इधर एक फैन लगा हुआ है इधर एक ऐ_सी लगा हुआ है बहुत सारा लाइट जल रहा है पिंक कलर का दीवार का पूरा पेंट है।

वो फैन है इधर में हैप्पी बर्थडे का समान है एक केक है।

यहां बहोत सारे टायर रखे हुए हैं इधर एक आदमी बैठा हुआ है टायर के ऊपर बहोत सारे स्टीकर चिपकाए हुए है इधर बहोत सारे लाइट लगा हुआ है लाइट बिना जल रहा है यहां पे बहोत सारे स्टैंड लगे हुए--

यह एक स्कूटी का शोरूम है। यहां पर तीन स्कूटी पार्क किए हुए हैं। उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है।

इधर एक कंप्यूटर है एक लकड़ी का बॉक्स है लकड़ी का अलमारी है एक पर्दा लगा हुआ है।